पे खरोच आते हुए दिख रहा है और एक अ--

ये कोई छोटा सा स्टोर टाइप का लग रहा है कुछ खाने पीने का कुछ नमकीन सामान है।

कुच्छ रिंग टाइप का बना हुआ है कुछ बच्चे वहां पर खेल रहे कुछ पिसलन टाइप का स्लीपर टाइप का बना हुआ है पुल में जो पुल जैसा होता है बेसिकली ।